ऊपर हमें एक टंकी रखी हुई नजर आ रही है और नीचे पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

यह दृश्य दिल्ली पब्लिक स्कूल गोलार का है।

ये दृश्य एक खेत का है जहाँ पर हमें एक बड़ा सा पेड़ नज़र आ रहा है और हमें नीला और सफेद आसमान नज़र आ रहा है।

यहाँ पर हमें दो युवक खड़े नजर आ रहे हैं और यहाँ पर लोग पेट्रोल डलवाने आते हैं।

दुकान का नाम सिटी कार्ड है और नीचे भी दुकानें हैं ना बी_एम हेल्थ केयर और के_एफ_सी ।

यह दृश्य पेट्रोल पंप का है पेट्रोल पंप का नाम इंडियन ऑयल है और यहाँ पर हमें दो युवक खड़े नजर आ रहे हैं।

और यहाँ पर हमें बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई नजर आ रही हैं।

गार्डन में झूले नजर आ रहे हैं।

और घर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है।

इस तस्वीर में हमें रोड नजर आ रहा है रोड के ऊपर हमें दो गाए चलती हुई नजर आ रही है काली कलर की।

हरे हरे पेड़ नजर आ रहे हैं और हमें चट्टानें--

गुलाबी रंग से पुती हुई है और हमें नीचे एक पीली कलर की बस खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

छोटे-छोटे बड़े-बड़े अलग-अलग आकार के यहाँ पत्थर पड़े हुए हैं।

इस तस्वीर में हमें सात युवक दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने होली खेली हुई है।

और हमें चार युवकों का चेहरा नहीं दिख रहा है।

इस तस्वीर में हमें राजपूत रेस्टोरेंट --

हरियाली ही हरियाली और हरे-हरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ मछलियां नजर आ रही हैं रखी हुई।